यह कोई ऑफिस है जिस पर बहोत से--

यह एक शाम की व्यू है।

यहां किसी घर को बनाया जा रहा हैं। जहां पे बहोत से लोग दिखाई दे रहे हैं और--

और यह छत का निर्माण करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

लग रहा हैं जिस पर बहुत से टेबल और चेयर्स लगाए हुए हैं और--

और एक स्क्रीन दिखाई दे रही है।

फूलों के पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और नीला आसमान दिखाई दे रहा है। एक पीला कुछ दिखाई दे रहा है।

रोड है जिस पर टाइल्स लगी हुई है और--

यह एक बस स्टैंड है जिस पर--

यहां पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही--

एक बाइक दिखाई दे रहा है और एक सीढ़ी दिखाई--

और एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे--

है और कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है।

आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे बहुत से चेयर और टेबल दिखाई दे रहे--

जिस पर एक बहुत बड़े मिरर में--

और पीछे काफी बिल्डिंग्स दिखाई--

और अंदर एक लड़का दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं बिजली की तारे दिखाई दे रही है।

कुछ जिम का सामान है।

पीले और ब्लू कलर के मैट है।

रखी हुई है और एक डायरी रखी हुई है और एक बोतल रखी हुई है।

यह एक फॉरेस्ट ऑफिस --

दे रहे हैं और एक रोड दिखाई दे रहा है।

है जिस पर कुछ टिप्पर --

जिस पर बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ--